आस पास लाइट जल रही है। यहाँ पे गुल्दस्ते भी है जोकि बहुत सुंदर है। अलमारी में रखी गए हुए हैं। कुछ गुल्दस्ते शीशे में रखे हैं।

जो कि शीशे की हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टॉवर भी है।

यहाँ पे बोहोत से सोफे पड़े हुए हैं जो लाल रंग के दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे एक मंडप सजा हुआ है यहाँ पे बोहोत से लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं आस पास गुलदस्ते लगे हुए हैं ।

यहाँ पे एक जंगल है बोहोत से पत्थर हैं जो बोहोत ही बड़े-बड़े हैं। यहाँ पे एक जाल सी बनी है।

यहाँ एक कार है जो स्की सर्विसिंग हो रही है। यहाँ पे बोहोत से बॉक्स रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक मंदिर है जो बोहत बड़ा है। यहां पे तीन भगवान की मूर्ति रखी हुई हैं। मूर्ति गोल्डन कलर की हैं ।

यहां पे एक बिल्डिंग जो काफी बड़ी है। यहाँ पे एक आदमी अपनी पीछे से तस्वीर निकालवा रहा है।

इसमें बहुत सी लाइटें लगी हुई हैं आस - पास बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे पेड़ भी बहुत बड़ा है यहाँ पे एक रेलिंग बनी हुई है जो लोहे की है।

यहाँ पे बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आगे बहुत सी बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक आदमी हेलमेट लगाए आ रहा है।